पीछे पर्दा भी लगाया गया है पर्दो से इसको टेंट लगाया गया है।

मकान दुकान है जहाँ पे तमाम गाड़ियां खड़ी है बाहर कुछ लोग भी खड़े हैं छोटी सी दुकान भी है और तमाम पेड़-पौधे भी हैं यहाँ पे पक्की सड़क है किनारे-किनारे ऑटो फोर व्हीलर --

टेम्पू सब लोग खड़े हैं यहां पे इंतजार कर रहे है किसी चीज़ का इसमें देख के समझ नहीं आ रहा हैं बट जो भी है बहुत ही अच्छा है।

बाहर झंडे पताखे भी इसमें लगाए गए हैं बाहर कुछ दो तीन लोग खड़े हैं यहाँ पे लिखा गया है गेट नम्बर चार।

बाहर ईंट भी बिछाए गए हैं इस मकान के बाहर जो की बहोत ही अच्छा लग रहा है इधर एक जीप खड़ी है इधर एक फॉर व्हीलर खड़ी है।

मात्रा में लोहे की कुछ सामने फ फेंकी गई है छिटकाई गई हैं इसमें इसमें छोटे-छोटे छिद्र हैं कुछ लम्बे भी हैं कुछ पतले भी हैं इसी में रखे गए है।

जैसा की हम देख सकते हैं की यहाँ पे एक लड़का लेटा है बगल में एक बोतल रखी गई है पानी की। एक आदमी खड़ा होके इसके पैर का एक्सरसाइज करा रहा है।

अलमारी में रखी गईं हैं जो कि बहोत ही सुसज्जित ढंग से रखी गई हैं |

ये किसी गांव का सीन का प्रतीत होता है जहाँ पे काफी हरे-भरे पेड़-पौधे है जो की बहुत अच्छा लग रहा है दूर-दूर बहुत ही मकान बनाए गए हैं |

रस्सी खींचकर उसके ऊपर इसको टांगा गया है अच्छे ढंग से रखे गए है ताकि ये खराब न हो देख सकते है काफी जगह में मतलब तार है इक्क्ठा तार है ये।